योग जीवन के लिए बहुत लाभदायक है।

बैंक से ग्राहक बाहर निकल रहे हैं ।

तस्वीर में एक टॉय ट्रेन दिखाई दे रहा है यह किसी पार्क का तस्वीर है।